यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा ब्लू स्काई देखने को मिल रहा है जो कि काफी ब्राइट और उसके नीचे हमें पहाड देखने को मिल रहे हैं जो कि काफी हरियाली के साथ फैला हुआ है उसमे झा पेड़ पौधे वगेरह हैं।

और हमे बीच में एक नदी देखने को मिल रही है जहाँ पे बहोत सारा पानी जम- जमा हुआ है सामने की तरफ हमें दुबारा पेड़ दिखता है।

इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं एक तालाब जो कि सीमेंटेड बना हुआ है बीच में तालाब के सीमेंटेड एरिया में से एक पेड़ भी उग रहा है ।

पर हम वापिस से एक लोहे की जाली को देख रहे हैं जो कि हाफ ही है और उसके पीछे हमें ब्राउन ग्राउन्ड देखने को मिल रहा है।

जहाँ पर एक जानवर है ब्लैक कलर का भालू जैसा और उसके बाद हमें कुछ पेड़ देखने को मिल रहे है लोग उसे देख रहे है।

देखने को मिल रहा है एक सीनरी अ जहा पर कुछ लिखा हुआ है हिंदी मे वहा पर कुछ फोटोज बनी हुई है एक शेर की व्हाइट टाइगर की और एक नॉर्मल टाइगर की।

पिच्चर में हम बहुत सारे पौधे देख रहे हैं जो कि काफी ग्रीन हैं साइड में कुछ पेड़ भी ऊग रहे हैं और एक रास्ता जैसा कुछ हमें देखने को और मिल रहा हैं।

हमें एक पुरानी इमारत देखने को मिल रही है जो की बनी हुई है एक पत्थरो से मिलकर पुराने जमाने के स्टाइल में और हमें झील देखने को मिल रही है।

जहाँ पर पानी भरा हुआ है पीछे की तरफ हमें पेड़ - पौधे देखने को मिल रहे हैं जो कि हरियाली फैला रहे हैं और ऊपर है खुला आसमान जोकि वाइट कलर का है।

ब्राउन कलर का और कुछ धब्बे जैसे देखने को मिल रहे हैं ऊपर हमें आसमान देखने को मिल रहा है।

बिच में एक मैदान भी है जो की वो भी ग्रीन है | वहा पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग चल रहे है घासो पे और उपर खुला आसमान--